बहुत सामान रखे छे। कॉपी किताब के लाइट उइट के बहुत बढ़िया वयवस्था होय छे।

बीस पच्चीस ठो दिल के चित्र दिखै छे।

फूल बहुत अच्छा शांत लगै छे।